बहुत सारे लोग खरीद रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो काउन्टर पे बेठा हुआ है ट्रे रखा हुआ है ।

खुलने का समय दिखाया है आठ बज के पांच मिनट आठ चौदह बज के पांच आठ सोलह बजके पांच इ समय है नि निकलता है इसमें से ये लोग एक जगह से दूसरे जगह सन्देश भेजते हैं।

पार्टी फंक्शन हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा लोग बैठे हुए हैं गुब्बारा लगा हुआ है लग रहा है उ का जन है कोई।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है शीशे के ऊपर देखो उसे सजाया गया है लाइट के ऊपर डाला गया है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।

रोड है रोड की बगल में बस स्टॉप जैसे बनाया है चलने बनाया है लेकिन अभी बहुत सुन्दर रोड है सुन्दर-सुन्दर अपार्टमेंट बना है सिर्फ सोलर से बनाया है ।

औरत है उ भी मोबाइल से बात कर रही है मुंह पे बुर्का लगाई है।

चक्का दिख रहा है पुराना मोटर साइकल है।

यहां सर्विस सेंटर के सामने रखा हुआ है दुकान है यहाँ बाइक बनाने वाला।

एक गेट दिख रहा है वहाँ टब दिख रहा है बगल में एक बाल्टी दिख रहा है पोस्टर लगा हुआ है ।

रेलिंग लगा हुआ है पुलिस चौकी हो सकता है।